झील का किनारा है। जहा पर नाव खड़ी हुई है। दूर दूर तक पाणी हरियाली पेड़ नजर आ रहे है। नीला आसमान मे बादल नजर आ रहा है।

प्राकृतिक दृश्य है जिसमे झील का किनारा नजर आ रहा है पेड़ पौधे फूल नजर आ रहे हैं आसमान नजर आ रहा हैं।

पार्क नजर आ रहा है जहा पर एक लड़की लाल रंग की फिसलपट्टी से फिसल रही है पीछे कुछ लोग बैठे हुए है हरियाली और पेड़ नजर आ रहे और एक पानी का पाइप नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे एक रंगीबेरंगा झांकी की तरह बना हुआ है जहां पर लोग संगीत बजा रहे है।

वीर मे एक मेला नजर आ रहा है जाहा पर एक महिलाये बच्ची खडी हुई है पुरुष भी नजर आ रहे है और रंगबी रंगी इमारत नजर आ रही है एक लाल रंग कि गाडी पर बचा बैठा हुआ है।